स्टेशन हैं। यहां पे स्पीकर रखा हुआ हैं। जाल लगा हुआ है। जाल के पीछे बहोत सारे बंदे है।

और लाल कलर की कारपेट बिछा हुआ है अंदर बैठने के लिए--

पिंक कलर का पेंट है ऊपर व्हाइट कलर का पेंट है।

काम कर रहे हैं रेड कॉलर की पट्टी लगी हुई है एक पिलर खड़ा कर रखा है।

चटनी रखी हुई है और यह पूरा सिस्टम एक टेबल पे रखा हुआ है दो गिलास रखी हुई हैं।

एक आगे पेड़ है सुखा हुआ उसमें कुछ पत्ती लगी हुईं हैं एक लाइट का खंभा है एक पाम का पेड़ लगा रखा है।

गार्डन में पाइप फैल रखा है पानी के लिए घास लगी हुई है गार्डन में।

एक हे जंगल के अंदर और बंदा है यहां पे।

ये एक कारपेंटर की दुकान है यहां पे गाड़ी कट के बनती है और गाड़ी का काम हो रहा है एक सलेंडर रक्खा है ब्लू कलर का।

और गाड़ी की डिग्गी खुली हुई है स्कॉर्पियो गाड़ी है व्हाइट कलर की एक बंदा काम कर रहा है उसमें--

बड़ीहा बना रखा है बस घर पे पलस्तर नही हो रखा है अभी--

नीचे हॉस्पिटल है सामने दो डॉक्टर बैठे हुए हैं एक ने कैप लगा रखी है एक ने नहीं लगा--

और शटर लगा हुआ है उसमें तार लटका रखा है एक--